इसमे मुझे एक स्प्रे बॉटल रखी दिख रही है।

इसमें मुझे एक लड़का सेल्फी लेता दिख रहा है।

इसमें मुझे चांदी की चैन दिख रही है।

इसमें मुझे बहुत सारी बोरियां दिख रही हैं।

इसमें मुझे एक व्यक्ति बैठा दिख रहा है।

इसमें मुझे सी_एच_एन फर्मा लिखा दिख रहा है।

गेट के ऊपर मुझे नौ मछलियाँ दिख रहीं हैं।

इसमें मुझे बिल्डिंग पीले रंग की दिख रही है।